क्रिश्चियन ए मंदिर की तस्वीर है जिसमे कि आ क्रिश्चियन का ऊपर सिंबल लगा हुआ है और आ --

अ जोकि दुकान में बहोत सारे सामान रखे हुए हैं और फॉर्चून के सामान रखे हुए हैं। दुकान के ऊ --

दुकान की सेल्लिंग पे एक पंखा लगा हुआ है जोकि ब्लैक कलर का है और एक --

इस तस्वीर में बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है। नदी में एक बड़ा सा नांव दिखाई दे रहा है। नांव पे बहोत सारे लोग सवार है।

और नाव नाव पे बहोत सारे लोग सवान हैं। आसमान व्हाइट --

इस तस्वीर में एक बड़ा सा बड़ा सा अ बड़ा सा --

ये एक फैक्ट्री की तस्वीर है जहाँ की बहुत सारी मशीने रखी हुई हैं। अ --

इस तस्वीर में एक --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

इस तस्वीर में बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। छोटी-छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही है। दो बड़ी ऊँच्ची बिल्डिंग दिखाई --

खड़े हैं जो कि वाइट कलर का दोनों शर्ट पहने हुए हैं और एक ब्लैक कलर का पेंट पहना है। एक ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है।